इस तस्वीर मैं आप एक व्यक्ती को दूसरे व्यक्ती की पीठ पे कोई थेरपी देते हुए देख सकते है।

इस तस्वीर मे आप एक व्यक्ती को लेटा हुआ देख सकते है जिसके पीछे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगा है और एक पीले रंग का पड़ा भी लगा है।

मौजूद है एक पुरुष ने चश्मा लगा रखा है तथा एक स्त्री ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है।

और वो व्यक्ति आराम से टेबल पर लेता हुआ है दोनों ने एक समान के हि कपड़े पहन रखे है।

दिखाई दे रहा है जोकि रोड पर चल रहा है तथा कुछ बाइक वाले भी दिख रहे हैं। जिनपे एक व्यक्ति और दूसरे पर दो व्यक्ति तथा तीसरे पर तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं।

तथा इसके पीछे भी एक बाइक लगी है तथा यहाँ पे बहुत सारी दुकाने भी देखि जा सकती है।

फेड और गुलाबी दिख रहा है वही पास मे कुछ इस्त्रीया भी जाती हुई नजर आ रही है और बस के बगल मै एक हरे रंग की बस हैं।